यह सर्विस एजेंसी है और इसमें आपकी कार सर्विस होती है और इसमें हम देखें--

और जो आपको पिलर दिए हे काफी पुराने टाइप के डिजाइन दिए गए हैं काफी अच्छे पिलर है।

चार पेट्रोल डालने की मशीन है ।

यह एक कॉलेज है कॉलेज में आपको दिख रहे है ये अ रिसेप्शन बना हुआ है जहां एडमिशन के लिए फॉर्म मिलते हैं और दूसरा कमरे भी बने हुए हैं एक नंबर में--

एक छोटा सा लेक है जो कि आप देख रहे हैं और सामने आपको घर बने हुए दिख रहे होंगे ऊपर आसमान है सफेद बादल छाए हुए हैं और ऊपर और बीच निकला हुआ है जो कि ये रेलवे के लिए है।

ये एक कॉलेज है और ये इसमें आपको रेड कलर कि दीवाले दिख रही होंगी डिजाइने बनी हुई रेड कलर में और सामने गेट है।

ये एक सलून है सलून जो है न्यू ताज सलून है जिसका नाम मोहमद्द इमरान है इसका नंबर भी दिया गया है ।